यहां पे अंधेरा अंधेरा सा दिखाई दे रहा है यहां पे बोहोत सी लाइटें चमचमाती हुई दिखाई दे रही है यहां पे बोहोत बड़े लंबे खम्बे भी लगे--

--बड़ा बैंक खुला हुआ है ये स्टेट बैंक है उसके ऊपर कुछ बड़ा पोस्टर भी लगा हुआ है जिस पर लिखा है चामराजा नगर।

बोहोत अच्छा लग रहा है यहां पे बोहोत सारे पानी भरा हुआ है इसके पानी के पीछे बोहोत सारी तार लगाए गए है।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

यहाँ पर काले - काले सी टेक्सिया रखी हुई है उनमे दो लाइट भी दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ पीले कलर कि टैक्सी के ऊपर डिज़ाइनस भी बना हुआ है यहाँ पर बहुत सारे पत्थर भी बिखरे हुए रखे है ।

यहाँ यहाँ पर एक ऑटो भी चलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर बहोत सारी गड़ियाँ भी दिखाई दे रही है यहाँ पर बहोत सारी बिल्डिंगे बनाई गई --

बहोत ही अच्छी सजावट की गई है यहा पर बोहोत सारे आदमी झूले मे बेठे हुवे दिखाई दे रहे है बोहोत ही सुंदर दिखाई दे रहा है।